में घर का काम चालू हो या जिसमें नया मकान बन रहा है काफी सारे मज़दूर वहाँ पर काम कर रहे हैं।

शॉप है। एक दुखान जहां पे बहुत सारे बोतल बोतल जैसे की कूलड्रिंक पानी और भी बहुत उम्म हेर मांगे की चीज माजा वाज़ा बहुत समान सब नजर आ रहा है।

पार्क है जिस पार्क में वाटर निकलने के लिए पाइप्स लगा हुआ है और लाइटे है। काफी सुंदर दृश्य है।

और काफी सुंदर बनाया गायम डिज़ाइन है।

बगल में पेड़ पोधे हरियाली अंदर बैठे हुआ एक आदमी दिख रहे है बहुत हरे हरे पत्ते है काफी सुंदर है।

और एक कार दिख रही है आधा वहाँ पे बहुत सारे घर दिख रहे हैं।

दस-बारह घर बहुत बड़ा-सा पहाड़ है ऊपर घास-वास वग --

एक घर है जिसमें हॉस्पिटल के लग रहा है फीमेल जनरल वार्ड लिखा हुआ है अंदर बेड लगा हुआ है।

और इसके सोने के लिए अंदर दो विंडो है पीछे एक दरवाजा खुला हुआ है।